यामाहा का शोरूम दिखाई दे रहा है इसके सामने काफी सारी गाड़िया है कुछ स्कूटी भी है।

का पुतळा है और उसके बाजु मे एक म लड़का झुला झुल रहा है और उसके बाजुमे काफी सारे ल-लड़के मचांग पे चड़ रहे है।

एक तलवार बाजी की कक्षा दिखाई दे रही है बच्चे --